है काई बना हुआ है और पानी जो है एकदम साफ दिखाई दे रहा है वाइट कलर का।

और बहोत सारे लोग जो है खा रहे हैं चेयर पे बैठ के।

और सोफा लगा है एक साइड रेड कलर का है और--

ओटो जो है वो ब्लैक और ग्रीन कलर का दिख --

रहा एक जो पीछे है वो ग्रीन और येलो है उसके ऊपर एक झंडा भी दिखाई दे रहा है और उसे तरफ कुछ --

आने और जाने का रस्ता के लिए और रोड के उस तरफ एक मैदान है उसके बा उसके सामने --

चार्ल्स डार्विन बायोलॉजिकल लैबोरेट्री करके।

दो डोर दिखाई दे रहा है साइड में एक--

एक पॉट में एक झाड़ दिखाई दे रहा है और एक ताला दिखाई दे रहा हैं।

एक अ शादी का माहौल दिख रहा है।

और यहां पे डेकोरेट किया हुआ है बहुत सारे अह फ्लावर्स के साथ और पर्दा लगाया हुआ है लाइटिंगस् किया हुआ है।

ओस्टर बटर वगैरा डिस्प्ले किया हुआ है और --

और यहां पे दो टेबल लगाया गया है और एक चेयर और सीट बनाया है बना बैठने के लिए।

और डस्टबिन दिखाई दे रहा है और चेयर दिखाई दे रहा है पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप का जो मशीन है वो दिख रहा है साइड में दो बांग्लोज़ दिख रहे--

अ यहां पे गुजराती में कुछ डोर के ऊपर लिखा हुआ है।

और काउंटर पे अ एक टेबल बनाया है और एक स्विच बोर्ड है नीचे --

ऊपर जो फ्लोर है वो बहोत अच्छे से दिखाई दे रही है।

और उनके बासुरी जो है वो एकदम अच्छे से दिखाई दे रही हैं।

और यह साउथ इंडियन का फेस्टिवल है।

और उसके हाथी के ऊपर एक लड़का खड़ा हुआ है।

और आजू बाजू पूरा हर तरफ ग्रास उगा हुआ है।

और बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे बीच बीच मे --

और बादल जो है एकदम साफ दिखाई दे रहा है पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा है।

छोटे छोटे भी है और बड़े भी है और आजु बाजु बहोत बड़े बड़े पेड़ नारियल के और--

हा मतलब गार्डन जैसे और बीच बीच में और हर तरफ बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे --

और छोटे छोटे पेड़ भी प्लांट किया हुआ है लाइन से और --

नीचे आ के तालाब से अह मिल रहा है।

और आजू बाजू ग्रास तोड़ के रखा है ऐसे दिखाई दे रहा है।

और बीच में एक चेयर लगाया है और बंबू भी दिखाई दे रहा और--

और साइड मे डोसा इडली चटनी का दिखाया हुआ है औ और दो स्टेयर्स है।

यहां पे बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है तालाब जैसे कुछ लग रहा है।

और उसके आजू बाजू हर तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे।

बीच में एक नाव दिखाई दे रहा है और पानी के अंदर अ--

और बीच में एक लाइट का खंबा भी दिखाई दे रहा है जो पानी के अंदर दसा हुआ है।

यह एक कुछ मुस्लिम का बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

और छोटे खिड़कियां भी है उसके ऊपर ही ऐसे शेप में दिया हुआ है एक अलमारी दिखाई दे रही है।

जो अ बीच बीच में टेबल्स और चेयर लगाया है।

है नीचे कुछ लाइट लगाया है ऐसे लग रहा है।

और सेफ्टी डोर बनाया है दो और साइड में कुछ कांच का लगाया है और बैन --

एक बूढ़ी आंटी है और दो तीन आंटी लोग बैठे हुए हैं और एक अंकल --

और अंदर एक बेड है और एक टेबल है और एक चेयर है।

और ए_टी_एम करके एक्सिस बैंक का दिख रहा है।